जो कि लोहें की एंगल से बना हुआ है पीछे मुझे नीला और पिला कलर में पेंट हुआ दिख रहा है।

मुझे एक कार दिखाई दे रही है और कार के आसपास कुछ पेड़ पोधे दिखाई दे रहे है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है और कुछ--

मुझे घर दिखाइ दे रहा है घर के अंदर कुछ बोरी है हे दो बोरी वो दिखाई दे रही है और दो दरवाजा लघ है दरवाजा पे कुछ रस्सियां तंगी है वह दिखाई दे रही है।

मुझे नदी बहती हुई दिखाई दे रही है आजू-बाजू मुझे कुछ घास दिखाई दे रही है और मुझे कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं और नदी के आसपास बहुत सारी चीज घर दिखाई दे रही है और कुछ चीज बनी हुई दिखाई दे रही है।

मुझे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है नीचे कुछ गाड़िया है वो दिखाई दे रही है जो की वाइट कलर की है और बिल्डिंग कुछ खिड़कियाँ है काँच की वो मुझे दिखाई दे रही है।

मुझे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग के नीचे गाड़ीयां खड़ी है दो तीन गाड़ीयां वह दिखाई दे रही है।

वह जो बिल्डिंग में कुछ खिड़कियां है वह दिखाई दे रही है आजू बाजु पेड़ पौधे हैं वह दिखाई दे रह हैं लाइट के खंबे हैं वह दिखाई दे रहे हैं।

यहां मुझे मंदिर दिखाई दे रहा है जिसका कलर पीला और हरा है रेड है और उसके ऊपर झंडे लगे हुए वो दिखाई दे रहे हैं ।